इस तस्वीर में मुझे देखने को मिल रही है एक दुकान है इसमे बहुत सारा सामान रखा हुआ है जैसे की हेयर ऑयल्स फ्राई ऑयल्स --

साइड में कुछ लगा के रखा गया है क्योंकि इंसान अंदर घुस ना पाए।

इस तस्वीर में मुझे देखने को मिल रहा है की एक कुछ प्रोग्राम चल रहा है।

और जिसके लिए बहुत सारे बैठा हुआ है और इस स्टेज में बहुत सारा लाइट्स लगा कर के रखा गया है।

जो कि रेड कपड़ा पहन के है और ये घर जो है ऊपर में टीना से टीना लगा के रखा गया है।

और ये घर जो है ये दुकान जो है इसमें से ग्राउंड फ्लोर को लेके तीन फ्लोर है।

यह पूरा शीशे ग्लास और कपड़ा से बनाया गया है उसके बाद पीछे मुझे एक प्यारा सा एक अलमारी देखने को मिल रहा है।

और एक ठो वाइट टीशर्ट पहन के है और एक ठो साथ साथ में है और एक ठो लड़का टॉप स्कर्ट एक ठो लड़की टॉप नाम है छोटी ड्रेस में है।

इस तस्वीर मुझे देखने को मिल रहा है कि एक रात को लिया हुआ एक फोटो है जो की बाजार या रो रोड में है।

और उधर में एक बड़ा सा एकदम बहोत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है उसका सामने मे भी बहोत बड़ा बड़ा बिल्डिंग लोग बहोत ज्यादा है।

उसको कुछ सीख रहा है और आगे से एक लड़का और ये लोग जो हैं मैक्सिमम लोग ग्रीन टी शर्ट पहन के हैं।

जो चित्र का कलर जो है वो ब्लू कलर का है सामने सामने--

बहुत सा बड़ा पेड़ जो कि अमला का है।

और इसमें जो रहा है वो प्लास्टिक में भरके इस टेबल पर रखा गया है।

इनमें से दो इंसान एल्लो एंड व्हाइट जर्सी पहन के हैं।

पीछे पीछे पीछे मुझे एक गेम देखने को मिल रहा है जो कि है।

ये भी देखने को मिल रहा है कि यहां में एक गाड़ी में दो इंसान मिलके फ्यूल भरा रहा है।

ऊपर में बहोत सारा लोग काम कर रहा है उसके बगल में कुछ देखने को मिल रहे है जोकि आदमी काम करने के लिए यूज कर यूज कर रहा है।

और सामने मुझे एक रोड के साइड में कुछ कुछ देखने को मिल रहा है जो कि सिर्फ फेंसिंग के लिए यूज किया जाता है।

पिंक कलर का पहना है कपड़ा उसके बाद एक गेट के सामने में फिर एक लड़का है जो कि कुछ वहा मे बात कर रहा है।

बैलून वैलून से डेकोरेट कर रखा गया है उसके बाद सामने मुझे--

फर्नीचर देखने को मिल रहा है सोफा सेट वगैरा वगैरा।

प्रेस गोल्ड लोन वोन वगैरा वगैरा लोगों को जल्दी मिल रहा है।

देखने को मिल रहा है और भी शूज वगैर वगैरा वगैरा देखने को मिल रहा है उसके बाद कुछ ईयर में लगाने के कुछ वगैर ओ सारा चीज देखने को मिल रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक सुंदर सा नजारा है और वहां पे बकाफी सारे बम्बूस उगा हुआ है।

जो की इसमें बहुत सारा कैम्प्स लगा के रखा गया है।

और बहुत सारा लकड़ी वगैरा है।

इस तस्वीर में मुझे ये नजर आ रहा है कि इसमें बहोत

सामने में मुझे एक बड़ा सा एक बिल्डिंग देखने को मिल रहा है और ऊपर में भी मुझे बहुत सारा बिल्डिंग देखने को मिल रहा है।

बहुत सारे फोटोज इनमें खुल रहा है उसके बाद आराम बेंच बहुत सारा लगा--

तस्वीर मे मुझे देखने को मिल रहा है कि एक रूम मे बहोत सारे इंसान लोग हैं।

है जो कि पता नहीं मुझे उसके पीछे काफी सारे चेयर्स लगा रखा है उसके बाद--

इसमें मुझे एक दरवाजा देखने को मिल रहे है जोकि खुला है और पीछे मुझे फिर तीन स्क्वायर बोतल देखने को मिल रहा है।

इस तस्वीर में मुझे दो इंसान देखने को मिल रहा है जोकि--

ऊपर से गिरा हुआ देखने को मिल रहा है।

है इसमें ग्रीन कलर से पेंटिंग किया गया है।

और ऊपर मुझे काफी सारे लाइट्स देने को मिल रहा है।

और उस दीवार में मुझे एक वॉल क्लॉक भी देखने को मिल रहा है।

इसके अंदर का बहुत सारा फर्नीचर है टेबल्स चेयर्स सोफा सीट्स वगैरह वगैरह देखने को मिल रहा है।

और बहुत सारा शूज वगैरह देखने को मिल रहा है ये चप्पल देखने को मिल रहा है और पीछे एक--

बहुत सारा लोग चढ़ रहा है और कोई कोई लोग चढ़ गया और कोई कोई लोग चढ़ने के लिए नीचे में है।